काफी सारे पेड़ लगे हुएं हैं।

काले बादल दिख रहे हैं।

काफी सारा सामान जमा हुआ है।

सभी औरतें सुहागन बनी है।

कुछ लोग नजर आ रहे हैं।

काफी सारे पेड़ लगे हुए हैं।

कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में हमें एक मॉल दिखाई दे रहा है।

आदमी ने मेहरून जैकेट पहनी हुई है।

कुछ हमें कुर्सी टेबल नज़र आ रही है।

बड़े-बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में हमें एक स्टूडियो नजर आ रहा है।

पेड़ों का रंगहरा है सामने एक गमला रखा है।

आदमी ढोलक बजा रहा है।

काफी सारी गाड़ियां नजर आ रही है।

तेज धूप दिखाई दे रही है।

आसमान में बादल नजर आ रहे हैं।

एक आदमी बैठा हुआ है।

इस चित्र में हमें एक तालाब दिखाई दे रहा है।

फूलों की माला दिख रही है।

सामने हमें काफी सारी किताबें नजर आ रही हैं।

सामने एक कार दिख रही है।

इस चित्र में हमें गुरुद्वारा दिख रहा है।

तीन आदमीनजर आ रहे हैं।

औरत ने लाल कपड़े पेहने हुए है।

काफी सारी लाइटे दिखाई दे रही हैं।